सभी बच्चो ने एक जैसी ड्रेस पेहेन --

सभी ने टोपी लगा रखी है सभी के पास बड़े बड़े ढोल दिख रहे है लाइट जल रही है कुछ कुमार का बोर्ड --

एक आंटी आ रही है। आसमान दिख रहा है। चदर दिख रही है और कुछ सब्जियां रख रही है।